इस तस्वीर मे एक स्विमिंग पूल है उसमें कुछ लोग हैं बाहर ऊपर की तरफ लाल रंग की कुर्सियां है।